और लेडी उतर उतरके जा रही है एक रोडवेज खड़े है लाल कलर के रोडवेज--

टी शर्ट पैंट पहने हुए हैं को मशीन से कुछ भर रहे हैं भगवान जी का मूर्ति दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में जैसा हम देख रहे है ब्लू कलर के सीसे जैसा एक बैंक लग रहा है केनेरा बैंक है और पायल बगल में पायल लिखा हुआ हैं।

। इस आसमान की खुली जगह पे पानी दिखाई दे रहा है और जहाज़ खड़ा हुआ है और उतरने चढ़ने का एक बना हुआ रास्ता है।

ये सुपर मार्किट है और मिलान होटल है और निचे किरणे की दुकान है।

फॉर्चून की और लोग एक आदमी खड़ा हुआ है दो गाड़िया कड़ी हुआ है झाड़ू वाडु राखी गई है यहाँ पे और ऊपर झंडा लगा हुआ है बी .जे.पी. का।

यहां पे एस.बी.आई. बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है और लोग जो स्कूटी खड़ी है हेल्मेट रखा है एक गार्ड खड़े है सिक्योरिटी गार्ड और यह बैग सजे सजा रहा है अंदर।

हॉस्पिटल है हॉस्पिटल दे दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है।